और बड़े बड़े पेड़ भी पीछे लगे --

सामने पिंक कलर के पर्दो से डेकोरेशन हो रखा है।

इसके ऊपर बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं।

किताबें मैगज़ीन मिलती है और लटकी हुई है।